इस इमेज में हमें एक स्टेज स्टेज पर हमें एक कैमरा लगा रखा हुआ दिखाई दे रहा है जो काले रंग का है।